तस्वीर में एक कॉलेज को दर्शाया गया--

ये गेंदे का फूल है कुछ वरमाला टाइप का टंगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक पहाड़ को दर्शाया गया है जो पहाड़ है और उसपे कुछ पेड़ पौधे हैं और कुछ सूखे पत्ते वगैरा हैं।

और एक उसका बैटरा रखा हुआ है बाहर।

ऐ_सी लगी हुई है बहोत सारी विंडो ऐ_सी भी है।

और एक ब्लैक टायर रखा हुआ है पुराना।

कुछ बॉटल्स दिखाई दे रही हैं।

एक पानी की बॉटल दिखाई दे रहा है एक फाइल दिखाई दे रहा है।

एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है।

पीछे एक बहोत बड़ा सा पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक मॉल को दर्शाया गया है।

कुछ शेरवानी टंगी हुई है कुछ लहंगा कांच में रखा हुआ है कुछ ज्वेलरी के सामान भी रखी हुई है।

छतरी मॉडल डेकोरेशन है कुछ स्टार मॉडल कुछ पेड का मॉडल और अंदर एक चेयर पे कुछ सामान रखा हुआ है।

ओन योर ड्रीम राइड का बोर्ड लगा हुआ है।

कैफ़े जहां पर चाय और काफी दी मिलती है।

टी_वी लगा हुआ जिसमें सी_सी_टी_वी कैमरा का फुटेज दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक बुलट दिखाई दे रही है एक कार दिखाई दे रहा है जो रोड पे चल रहा--

और एक टेबल पे बहोत सामान रखे हैं जैसे पिलास हो गया पेचकस हो गया।

इस तस्वीर में गंगा मैया को दर्शाया गया है।

कुछ आदमी है उनके हाथ में लौटकी हैं।

और कुछ एक आदमी है जो ऑरेंज कलर का पहना हुआ हैं जिसमे बोल बम लिखा हुआ है।

बगल में एक घर टाइप का बना हुआ है जहां एक बिजली का खंभा लगा हुआ है बाहर और एक पेड़ है।

और वहां का दीवाल लोग बना हुआ--

जो जिसमे कांच का गेट लगा हुआ है और अंदर कुछ चेयर --

डार्क पर्पल लाइट पर्पल कलर में बने हुए हैं।

और कुछ ऑटो दिखाई दे रही है कुछ आदमी दिखाई दे रहा है स्कूटी भी दिखाई दे रहा --

तस्वीर एक डेंटल हॉस्पिटल की है।

यहां पे दांत का इलाज होता है।

किसी कॉलेज के पीछे बन रहा है और उसमें एक अभी गड्ढा बना हुआ है एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

ये तस्वीर में एक डॉगी का इलाज हो रहा--

दो डॉक्टर मिल के एक डॉगी का इलाज कर रहे हैं।

जो ब्लू कलर के बेड शीट पे लेटा उसे लेटाया गया है उसे ऑक्सीजन लगा के।

का इलाज करने को देखा गया --

इस तस्वीर में एक ऑटो है जिसके ऊपर कुछ बिजली के खंभे वगैरा कुछ तार वगैरा रख के लेके जा रखा हुआ है।

कुछ दुकान नजर आ रहा है।

यहां बोरी में समान रखा हुआ है।

बाइक राइडर बाइक बन रही है बगल में स्कूटी भी खड़ी पड़ी है।

एक आदमी बैठा है चेयर पे--

इस तस्वीर में एक पब्लिकेशन बुक की दुकान को दर्शाया गया है जो जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन के नाम से है।

इस तस्वीर में एक आदमी है जो ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना।

यह तस्वीर एक ब्रिज की है।

यहां पे घास घास दिखाई दे रहा है बहोत पुराना ब्रिज है।

बटरफ्लाई में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है।

इस तस्वीर में एक पार्क को दर्शाया गया है जो कॉलोनी के बीच में है।

बाहर व्हाइट कलर का टाइल्स लगा हुआ है और एक घंटी लगी हुई है और एक फैन लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक रोड दिखाई दे रहा--